introduction to bash shell scripting के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
भिन्न प्रकार के shells के बारे में
एक bash shell script लिखना और
इसे निष्पादित करना
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स operating system के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित लिनक्स tutorials के लिए कृपया हमारी दर्शायी website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
* ubuntu लिनक्स 1204 os और
gnu bash version 4110
ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
अब हम परिचय के साथ शुरू करते हैं
हम देखेंगे कि bash shell we है
* bash shell एक command language interpreter है जो commands निष्पादित करता है
* ये commands मानक input उपकरण से पढ़ी गयी हैं
* input उपकरण निम्न हो सकते हैं
* आपका keyboard
* या एक सरल text file
अब मैं आपको दिखता हूँ bash shell क्या होता है
अपने keyboard पर एकसाथ ctrl + alt + t कीज़ दबाकर terminal window खोलें
यह gnome terminal खोलेगा
जाँचने के लिए कि किस प्रकार का shell हम प्रयोग कर रहे हैं type करें echo space dollar साइन shell बड़े अक्षरों में
enter दबाएं
आप देखेंगे कि output अगली line में printed हुआ है slash bin slash bash
यह बताता है कि हम bash shell प्रयोग कर रहे हैं
अब हम भिन्न प्रकार के उपलब्ध shells को जानते हैं
अब अपनी slides पर वापस आते हैं bourne bourne shell
* यह stephen bourne द्वारा लिखा गया मौलिक unix shell था
* इसमें आज के अधिकतर आधुनिक shells में पायी जाने वाली interactivity की कमी थी
c shell यह bourne shell में अनुपस्थित विशेषतायें features प्रदान करता है
k shell यह david korn द्वारा बनाया गया था
यह कुछ अतिरिक्त विशेषताओं features के साथ b shell और c shell दोनों की विशेषतायें रखता है
bash shell
* bash shell gnu project द्वारा विकसित किया गया था
* यह b shell भाषा पर आधारित होता है
* यह c shells और k shells की विशेषतायें रखता है
tc shell यह freebsd और इसके वंशज का default shell है
z shell
* यह interactive उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया shell है
* यह ksh bash और tcsh की बहुत सी उपयोगी विशेषतायें रखता है
अब देखते हैं कि bash shell script क्या होता है
bash shell script सरल text file में bash commands की श्रेणी रखता है
* यह commands टाइप करने के बजाय shell से इस text file को निष्पादित करने के लिए कहता है
अब देखते हैं एक सरल bash script कैसे लिखते हैं
हम echo echo command test करेंगे जो terminal पर hello world print करेगा
terminal पर वापस जाते हैं
double type करें echo echo space double quotes में hello world
और enter दबाएं
यह terminal पर hello world prints करता है
command ने आशानुरूप काम किया
अब यदि हम इस command को file में प्रयोग करना चाहें
अब इस command को file में डालें और उस file को निष्पादित करें
मैं इस उद्देश्य के लिए gedit text editor उपयोग कर रहा हूँ
आप अपनी पसंद का text editor उपयोग कर सकते हैं
मैं अपनी file desktop पर बनाना चाहता हूँ
अतः type करें cd space desktop desktop
enter दबाएं
अब type करें gedit space hello underscore world dot sh space & ampersand sign
gedit text editor है hello underscore world dot sh file का name है और
prompt खाली करने के लिए हम & ampersand उपयोग करते हैं
अब enter दबाएं हम gedit उपयोग करके hello _ world sh named एक नयी file खोल चुके हैं
अब type करें hash exclamation mark front slash bin front slash bash
यह प्रत्येक bash script की पहली line होती है
यह शीबैंग shebang या bang bang line कहलाती है
enter दबाएं
add file में एक comment जोड़ते हैं टाइप करके
hash space my first bash script
याद रखें कि hash के बाद कोई भी line comment की तरह कार्य करती है
और comments bash interpreter के द्वारा नजरअंदाज किये जाते हैं
add हम पहले प्रयोग की हुई command जोड़ सकते हैं
enter दबाएं और type करें echo echo space double quotes में hello world
enter दबाएं
टाइप करें एको स्पेस डॉलर साइन shell बड़े अक्षरों में
enter दबाएं type करें echo space backtick date backtick
backtick चिन्ह tilde character वाली की key पर होता है
अब file सेव करने के लिए save पर click करें
अब निष्पादित करते हैं अपने terminal पर वापस आते हैं
पहले हमें file को निष्पादन योग्य बनाना है
इसके लिए type करें chmod space plus x space hello underscore world dot sh
और enter दबाएं
अब type करें
dot slash hello underscore world dot sh
enter दबाएं
आप देख सकते हैं कि hello world terminal पर प्रदर्शित हुआ है
shell का प्रकार अगली line में दिखाया गया है यानि slash bin slash bash
और दिन महीना समय time zone और साल दिखाए day हैं
output system के आधार पर बदल सकता है
अब अपनी slides पर वापस जाते हैं और सारांशित करते हैं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
* shells के भिन्न प्रकार
* bash shell bash shell script
एक सरल shell script लिखना और script निष्पादित करना
नियत कार्य में निम्न message दिखाने के लिए एक सरल script लिखें* welcome to bash learning
* और ******** asterisks अलगअलग लाइनों पर
नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध video देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आई आई टी बॉम्बे से मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद